और दो गुफे जैसा कुछ दिखाई दे रहा है और एक भालू दिखाई दे रहा है जो ब्लैक कलर का है और कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में मुझे एक झरना दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर का है।

और एक लाइट दिखाई दे रहा है जो व्हाइट कलर का है और एक कारपेट दिखाई दे रहा है जो रेड कलर का है।

और कुछ बाईके दिखाई दे रही है जो ब्लैक कलर की हैं।

और एक छोटा सा झरना दिखाई दे रहा है जो व्हाइट कलर का है।

और बहोत सारे बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं जो ग्रीन कलर के हैं।

इसमें बहोत सारे बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है जो ग्रीन कलर के है।

और एक बच्चा दिखाई दे रहा है जो ऑरेंज कलर का शर्ट पहना हुआ है।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

और कार दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर का है और एक पेड़ दिखाई दे रहा है जो ग्रीन कलर का है और एक बांस दिखाई दे रहा है जो मिट्टी कलर का है।

और बहोत सारे बैनर्स दिखाई दे रहे हैं जो वाइट कलर के हैं और इसमें कुछ फोटोज बनी हुई है।

और कुछ बड़े-बड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है जो ब्लैक कलर के हैं और ग्रीन कलर के हैं और बहोत सारी लाइटें दिखाई दे रही हैं जो व्हाइट कलर की है।

और बहोत सारे पेड़ पोधै दिखाइ दे रहे है जो ग्रीन कलर है।

और कुछ पर्दे दिखाई दे रहें हैं जो रेड कलर के हैं।